यह एक जिम का दृश्य दिखाई दे रहा है।

यहां बहुत सारे खंबे रंगे हुए हैं।

यह रात का समय प्रतीत हो रहा है।

यह एक शोरूम का दृश्य दिखाई दे रहा है।

साईकिल भी दिख रहे हैं।

यहां सीढ़ियां बनी हुई है।

यहां एक पोस्टर पर स्नैक बार लिखा हुआ है।

यहां बल्ब जल रही है यहां गमले में कुछ पौधे भी लगाए गए हैं।

यह एक अग्निशामक यंत्र भी रखा हुआ है।

और एक दो पहिया वाहन भी लगा हुआ है।

यहाँ कुछ बल्ब भी जल रहे हैं।

यहां कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

यहां दीवाल में कुछ घड़ी भी टंगे हुए हैं।

कुछ मेज एवं कुर्सियां लगी हुई है।